--पर बहुत सारी मुर्तिया नजर आ रही है मुझे यह पे लाइटे चमकती हुई लाइटे नजर आ रही है यहाँ पे मुझे बहुत सारे आदमी भी नज़र आ रहे है।

मुझे कॉफी शॉप दिखाई दे रहा है यहा पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए है दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी लड़कियां दिखाई दे रही है .पर बहुत सारी लाइटें लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है यहाँ पर मेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे है यहा पर यहाँ पर चकरी भी लगी दिखाई दे रही है भी लगी हुई दिखाई दे रहे।

यहाँ पर बहोत सुंदर दि लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर पास में सुंदर गली भी दिखाई दे रही है यहाँ पर सुंदर-सुंदर लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

बहोत मालाये से सजी हुई दुकान भी दिख रही है यहाँ पर बहुत सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।